यहाँ पर एक पुल दिखाई दे रहा है जो काफी गंदा हो रहा है जिसकी दीवारें काफी काली हो रही है इसमें से पुल के बीच में से पानी निकलता हुआ काफी सुदंर लग रहा है पानी का बहाव काफी तेज है।

ये पानी काफी साफ लग रहा है किनारे पर बड़े-बड़े घर दिखाई दे रहे हैं एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ ट्राफिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है एक बड़ी-सी कार जाती हुई दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे कलरफुल पेपर दिखाई दे रहे है कुछ बुक्स और नोटबुक रखी हुई दिखाई दे रही है दुकान काफी बड़ी है।

ये एक बड़ा सा पार्क है जहाँ पर बहुत सारे झूले दिखाई दे रहें हैं कुछ फिसलन दिखाई दे रहीं हैं जो बहुत सारे कलर के हैं।